विद्यालय का परिसर है। यहाँ बहोत सारे पेड़-पौधे भी हैं और बहोत अच्छा प्ले ग्राउंड है जहाँ खेल-कूद कसरत कर सकते हैं और यहाँ बहोत सुन्दर रास्ता भी है।

गैस एजेंसी है। यहाँ लोग गैस भरवाने जाते हैं। गैस हमारे जीवन में एक अहम् अंग है। गैस के जरिये हम बहुत जल्दी खाना भी बना पाते हैं।